आधा ही काम हुआ है एक पोस्टर है।

पोस्टर के नीचे एक टपरी है।

और चार औरतों ने सफेद ड्रेस पहना है उनके हाथ में पेपर है।

उन्होंने रंगीन ड्रेस पहना हुआ है।

एक बहुत बड़ी टैक्रिस में से --

यहां पर गेट है गेट के ऊपर नाम लिखाया है।

बिल्डिंग के सामने मिट्टी का ग्राउंड है।

और उन के पीठ पर लाल रंग के बैग है।

अपनी बॉडी बनाने का काम कर रहा है।

और वहाँ से एक लाइट की वायरिंग गई है।

एगो रूम है रूम पर के अंदर --

एक बहुत बड़ा डेकोरेशन किया गया है।

मेन्बत्ति जलाई गयी है बहोत सारा है और धीमी-धीमी लाइटिंग दिख रही है।

वयरिंग भी है और भी लगाई हुई है।

और उन्होंने माथे पर बेल्ट लगाया है।

एक अशोका चिन्ह है बड़े-बड़े पेड़ है।

एक बडा गेट है बड़े गेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है।

मोबाइल शॉप है मोबाइल एयरटेल का है।

और एक आदमी दुकान के सामने खड़ा है और एक अंदर है।

और जमीन पर कुछ बीज बोए हैं।

वहां पर छोटे-छोटे पौधे निकल आए है घना सा जंगल है।

स्कूल के बच्चे हैं स्कूल के बच्चों एका --

रंगित है और उन्होंने पेपर कट्टिंग किए है।

और रंग-बिरंगे उनके ऊपर पेपर है।

कुछ नीचे गिरे हुए है कुर्सियों पर बैठे हुए है।

और उन्हॊने दीवार पर टोपली फ्लावर पॉट छोटा-बड़ा एक टोपली के ऊपर टोपली --